और ये बच्चे काफी ज्यादा--

इस तस्वीर के अंदर एक इमारत--

जो की दिवार के उपर बनी हुई है।

नहाते हुए नजर आ रहे है। और ये स्वाइमिंग पूल गोल घेरे में बने हुए नजर में आ रहा है। पीछे की तरफ बड़ी-बड़ी--

और उपर की तरफ आसमान भी नजर आ रहा है जो की किरणे भी पड़ रही है सूरज की इस मैदान में।

चेयर बोरियाँ भी इस तजवीर के अंदर नज़र आ रही हैं और इस तस्वीर में बसें भी खड़ी हुई नज़र आ रही हैं।